यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है इसलिए यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं आकर अपने शरीर को स्वस्थ रख रही है।

यह बहुत ही प्यारा दृश्य है प्राकृति के अंदर लोग योगा कर रहे है।

जो की देखने में काफी सुन्दर और आकर्षित लग रही है इस जहाज मे कई यात्री भी मौजूद हैं।

एक मंदिर है जो कि देखने में काफी सुन्दर और आकर्षित लग रहा है।